ऊपर यहां पर लाइट्स भी जलती हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक मस्जिद दिखाई दे रही है यहां पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

और यहां पर कैंडल्स भी जलती दिखाई दे रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक रथ यात्रा दिखाई दे रही है जहां पर कुछ लोग सामने नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज मे सामने यहां पर एक वार्ड दिखाई दे रहा है यह एक हॉस्पिटल नज़र आ रहा है।